इसके उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं।

और बहुत सारे गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

उसमें गेट भी लगा हुआ है।

पिक्चर एक दुकान की फोटो दिख रही है।

सामने वाले के हाथ में फोन है।

इस पिक्चर में एक दुकान की फोटो दिख रही है।

जिसमें एक कंकाल पड़ा हुआ है।

दो दुकानें इसके बराबर में एक और दुकान बी ऐ ।

एक आदमी वेंटिलेटर पर खड़ा हुआ है।

रोड पर एक बाइक है।

उनके चेहरे ब्लर हो रखे हैं।

जोकि व्हाइट कलर के हैं।

कुशन भी रखे हुए हैं।

पिक्चर में एक दुकान दिख रही है।

सीढ़ी से उतर कर नीचे बोहोत सारी लेडीज खड़ी हुई हैं।

एक ने ब्लैक कलर के पहन रखे हैं।

अपना अपना काम कर रहे हैं।

और बाहर की ओर एक गेट है और एक गेट कांच का है।